मेन और वूमेन दोनों लाइन में लगकर टिकट कटवाने के लिए--

इस आकृति में उपस्थित लोगों के द्वारा यहां पे--

कुछ लोगों के द्वारा यहां पे--

कुछ खेल बेल की तरह घोप घोप की आकृति में खुले आम कुछ--

इस इमेज में दिख रहा है कि यह एक गौतम बुद्ध भगवान की इमेज है जिसमे --

से लेकर आई हुई कुछ मछली--

इस आकृति में कुछ अलग अलग तरह के बरकार नजर आ रहे हैं जो आस पास के सभी गांव की कचड़ा को साफ कर--

लोगों के द्वारा तीन बाइक लगाई गई है जो अलग अलग जगह से लाई गई है इसमें बगल में एक--

इस आकृति को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि यह एक पुरानी चीज को रखी गई है एक--

ग्लास का इमेज़ है जिसमे से --

यह एक घर का इमेज है जो ओयो के द्वारा बनाए जाने वाली एक--

जाल को फाड़ कर इस नदी की ओर चलने की कोशिश की जा रही है।

यहां एक फारा है जिसमें अलग अलग तरह के ब्रांडेड मॉल को नौ फारा से नौ फारा से जोत दिया जाता--

जो इस रास्ते से होते हुए ऊपर जाएगी।